ऐसे इस बोर्ड पे मानसरोवर स्टैशनेरी लिखा हुआ हमारे यहाँ सभी प्रकार के कापी पेन पेंसिल रबर कपास व अन्य प्रकार की स्टैशनेरी समान।

अनुचित हैपर उपलब्ध है और संजय चंद्रवंशी मोबाईल नंबर लिखा हुआ है।

एक मैडम बच्चों को बता रही है बच्चे पैंटरी कर रहे है।

कुछ भक्तों की भीड़ बाहर भी है कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए बलब भी लगे हुए है।